पीला नारंगी और नीला रंग किया गया हैं।

सफेद रंग के बड़े से मकान को देख रहे हैं।

सामने हमें कुछ बड़े पोस्टर्स नजर आ रहें हैं।

जिसका रंग भूरा और सफेद है।

ऊपर कुछ रोटी जैसा दिखाई दे रहा है जिस पर--

सफेद रंग की चटनी दिखाई दे रही है।

यहां हम सामने एक जिम को देख रहे हैं।

सामने कुछ बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं साथ ही कुछ बड़े मकान भी नजर आ रहे हैं।

मैट पर हमें कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए--

शाम का समय है सुरज ढलते हुए--

यहां पर हमें किनारे में कुछ बड़ी नावे नजर आ रही है।